नाई उनके बाल काटते हुए नजर आ रहे हैं।

दुकान के गेट पे पर्दा लगा हुआ है गेट पे फूलों की माला है।

और यह एक बड़ा नर्सरी लग रहा है।

एक व्यक्ति झुक करके अ कुछ कर रहा है टेबल है रखा हुआ टेबल पे--

यहां एक सड़क नजर आ रही है सड़क पे एक ब्लू कलर का शर्ट पहन के एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

और ढेर सारे लोग भी नजर आ रहे हैं।